ये एक रेलवे टिकट फॉम की वी फोटो है जिसमें--

कच्चा रोड है जो कि मिट्टी से बना हुआ--

ये एक मीट मांस बेचने वाले दुकान की फोटो है।

और यहां पे सब मीट मांस का ही काम हो रहा है।

और जो बुकिंग काउंटर है वो भी यहां पे दिखाया गया है।

और बाकी जो है ए_सी लगी हुई है दो फैन लगे हुए हैं।

सभी भाई जो हैं टोपी पहन के बैठे हुए हैं।

इसमें जो है लाल कलर की आपकी चटाई बिछी दिख रही है आपको--

सामने जो है खाली रास्ता दिख रहा है दो बच्चे जा रहे हैं एक लेडिस जा रही है।

इसमें एक लड़की है जो कि अपने पर्स को कोरेंटाइन करवा रही है साफ करवा रही है।